बहुत सारे गमलो में कुछ पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ के पास कुछ हरी घास भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक अलमारी दिखाई दे रही है और अलमारी में रॉकेट बम के पैकेट दिखाई दे रहे --

जोकि सतरंगी है और उस पैकेट पर एक लड़की की फोटो दिखाई दे रही है जिसने ब्लैक कलर की कपडे पहने हुए हैं और उसके पास एक फूल दिखाई दे --

यहां पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है और गार्डन में ही दो गोल सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

निचे ही पीले कलर की चटाई दिखाई दे रही है और कुछ बल्ब भी दिखाई दे रही हैं।